और गन्ने भी रखे दिखाई दे रहे हैं। आस-पास पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं। पीछे लोगो के घर दिखाई दे रहे हैं।